यह परचून की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां तीन चार ट्रेन ट्रन खड़ी है।

और एक आदमी भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत अच्छा स्विमिंग पूल लग रहा है।

बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है।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

और लाइट भी दिखाई दे रही है अलग अलग खानों में सारा सामान रखा हुआ है।

यह एक कंपनी नजर आ रही है यहां बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं।

और बड़े बड़े बोरड भी दिखाई दे रहे हैं।

और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और बड़े बड़े पेड़ भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे पक्षी पानी में घूम रहे हैं।

और एक कुर्सी यहां रखी है।

और एक आदमी यहां खड़ा दिखाई दे रहा है।

फोन की दुकान दिखाई दी रही है बहुत बड़ी दुकान है।

यहां बहोत बड़ी पार्किंग दिखाई दे रही है और बहोत सारी वैन गाड़ियां भी खड़ी है।